बहोत ही अच्छा जगह हे यहाँ घूमे-फिरे ल बढ़िया लागथे मस्त अ बढ़िया लागथे नज़ारा मस्त हे अच्छा लागथे हे जघा मस्त हे।